कुछ शीशे लगे हुए हैं एक बिजली का मीटर लगा हुआ है पैड़ी लगी हुई है।

छोटे बड़े पत्थर हैं पेड़ है सुखी टहनी है।

यह एक घर है। घर में एक सोफा रखा हुआ है।

और कुछ घास उगी हुई है। एक दर दो दरवाजे लगे हुए हैं।

और नंबर लिखा हुआ है एक गेट लगा हुआ है।

एक लेडीज़ बनी हुई है एक बच्चे का चित्र बना हुआ है।

यह बिजली की दुकान है। इसमें बलप रखे हुए हैं केबल रखे हुए हैं ब् डब्बे रखे हुए हैं पंखे रखे हुए हैं बोर्ड ह् रखा हुआ है।

पंखे हैं प्रेस है।